तरह-तरह की पेड़-पौधे लगे हैं कुछ लोग बैठे हैं फोटोज ले रहे हैं।

राइट साइड और कुछ लोग ऑटो में बैठ रहें हैं कुछ खड़े हैं ऑटो खड़े हैं यहाँ पर।

ये एक सलून है जहाँ पर रेड ब्लैक कलर की कुर्सी रखी है सलून का बहुत सारा समान रखा है फ्लावर्स रखे है।

और एक उनके हाथ में मोबाइल है ब्लू कलर का कैलकुलेटर रखा है वाइट काउंटर है।

ये कोई सा मंदिर है जहाँ बहुत सारी भगवानों की मूर्तिया रखी हैं।

एक मतक है बैठी है सामने और यहाँ पे बहुत ही प्यार डेकोरेशन हुआ है ऊपर भी माता फुटेज लगी है और बहुत सारे लोग है लोग बैठे है खड़े है और आस-पास येलो येलो लाइटे लगी है दो खूबसूरत सी --

ये एक नाई की दुकान है जहां पे वो लगी है कुर्सियाँ लगी है पीछे भी एक कुर्सी लगी है जो कत्थई कलर की सामने एक पेड़ है कांच का गेट बना हुआ है और पंखे लगे हैं।

ये एक होंडा शोरूम है जहाँ पे बाहर कुछ लोग खड़े हैं।